यहां पर हमें एक शॉप की दुकान दिखाई दे रही है जिसमे जंगले बने हुए हैं।

यहां पर हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके गेट रेड हैं सामने गेट खुले हुए हैं।

यहां पर हमें एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें हमें मूली और शिमला मिर्ची रखे हुए दिख रही है तौलने के बहुत सारे बांट भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।

दिखाई दे रहा है पहाड़ से गिरते हुए नीचे पानी ओेेर हमें यहाँ पेड़ भी लगे हुए पहाड़ पे दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहाँ पर एक सब्जी की दुकान लगी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर हमें फूलगोभी भिंडी --

लाेेकी मिर्ची टमाटर रखे हुए मूली पत्तागोभी रखे हुए दिख रही है एक चकली रखी दिखाई दे रही तोेेलने की फल भी दिखाई दे रहे हैं केले सेब वगेे --

हमें यहाँ पर पहा पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं छोटे बड़े सभी प्रकार के और हमे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और हमें बहुत सारे वाहन रोड पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जीप है ट्रेक्टर ट्रॉली है और हमें बहुत सारे बोर्ड लगे हुए दिख रहे हैं बहुत सारे घर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक और सामन पड़ी हुई दिखाई दे दूर एक मंदिर दिखाई दे रहा है उसके पीछे हमे एक आम पेड दिखाई दे रहे और हमे घर दिखाई दे रहे है।